नाव डली हुई है नाव खाली है कोई नहीं बैठा --

और यहाँ पे और भी बोहोत सारे फूल रखे हुए हैं एक दुकान है।

और यहाँ पे बहोत सारे बैलून लगे हुए हैं बैलून का कलर है ब्लू ।

यहाँ पे एक अ लेडीज है। और यहाँ पे एक गर्ल्स है। एक गेंट्स दिखाई दे रहा है।

और फिर स्टेज बनी हुई है स्टेज पे एक बोर्ड लगा है।

यहाँ भी बहोत तीन - पाँच चूड़ियाँ हैं।

कुछ छोटे पेड़ है। कुछ बड़े पेड़ है।

और यहाँ भी और भी दुकाने हें।

और यहाँ फूलो की मालाएं लगी हुई --

दीवालो में बोहोत सारी तस्वीरे लगी हुईं हैं।

और रोड के इस साइड कुछ सामान रखा है गं --

इसपे ग्रीन कलर पेंट किया गया है।

इसमें सामान दिखाई दे रहा है।

और गुच्छे पे गुच्छे बने हुए हैं।

बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में।

और बिल्डिंग के बाहर बड़ा सा ग्राउंड है।

और एक बाइक से एक लड़का खड़ा है पी--

जो कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कैची रखे हुए हैं और भी सामान रखे हैं।

बिल्डिंग के बाहर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है ऊपर हिंदी में।

यहाँ पे खंभे लगे हुए है।

यहाँ पअ टिशू पेपर डले हुए हैं।